यंहा पे कुछ सामान भी रखा हुआ है आसमान पूरा सफेद दिखाई दे रहा है और यंहा पे बहुत सारे पेड़ भी यहाँ भी लाइट के खम्बे भी है।

सिल्वर कलर की यहाँ पे कोई पाइप्स भी लगे हुए है और यहाँ का सफ़ेद दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई गमले भी लगे हुए है।

यहा पे कुछ पाउच भी रखे है जिनकी कॉलर वाइट और येलो है।

बहुत सारे कपडे की थानों राखी हुई है जोकि कुछ वाइट कुछ पिंक कुछ सागी कुछ ब्लू कुछ ब्राउन ब्लाक येलो क्रीम कलर की है।

यहा पर सारी बाइक्स खड़ी हुई है जो की रेड और ब्लेक कलर की यहा पर बहुत सारे लोग भि खड़े हुए है यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग है यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियां भी है यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है जो पुरा नीला दिखाई दे रहा है।

कुछ फूट का समान बना हुआ है यहाँ की दीवार ब्राउन कलर की है ओरंज और गीरिन दिखाई दे रही हैं।

सारा सामान रुको यहां पे कुछ अच्गी रखी हैजिस्में लू एक मैं पिंक एक में वाइट कलर का पानी सा दिखाई दे रहा है और यहां का जो कांच--

यहा पे एक कार है जो वाइट कलर की है एक बाइक है खडी है उ-असके पर एक वक्ती बता है यहा पर बहुत सरे पेड़ भि दिख रहा है आसमान का रंग नीला दिही दे रहा है।